यहां पर बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई है यहां पर टीचर उन्हें पढ़ा रहे है और कुछ बच्चे बहुत सारे बेग भी रखे हुए है पुस्तके भी हाथ मे लाए हुए है और--

यहां पर एक स्कूल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पेड़ भी लगी है यहां पर बहुत सारा मैदान भी है यहाँ--

यहाँ पर ए एक भंडर का मकान सा घर सा दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर भी एक बहोत बड़ी कॉलेज दिखाई दे रही है यहाँ पर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक वाच मैन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे है यहाँ--

यहाँ पर एक झण्डा भी रखा हुआ है यहाँ पर एक ए. सी. भी लगा हुआ है यहाँ पर कुर्सी भी रखी हुई यहाँ पर टेबल भी रखी हुई है।

बस भी रखी हुई है और स्कूटी भी रखी हुई है यहां पर टैक्सी भी रखी हुई है यहां पर बहुत सारे लोग भी है यहां पर--